कुछ आदमी और महिलाएं भी है।

टंकी का रंग काला है।

आस पास फूलों से डेकोरेशन की गई है।

बैंक और ए_टी_एम के सामने बहोत सारे गाड़ी रखे हुए हैं।

यह दृश्य एक राधा कृष्ण मूर्ति का है जिसपर बहोत सारे फूल से सजाया गया है।

सामने एक लाल रंग का लोहा भी दिख रहा है जिस पर बहुत सारे कपड़े रखे हैं।

रस्ते के आसपास कुछ दुकानें भी दिख रही है।

आसमान का रंग नीला है।

दुकान का शटर का रंग काला है।

नजदीक में ही कुछ पत्तों का ढेर भी है।

जहां पर बहौत सारे व्हाइट कलर के नल दिख रहे है।

बिल्डिंग के सामने एक टेंट भी दिख रहा है।

इस दृश्य में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसका नाम इंडियन ऑयल है।

यह दृश्य एक रोड का है जहां पर बहुत सारे गाड़ी खड़ा है।

यह एक ऐसा दृश्य है जहां पर बहुत सारे गाड़ियां दिख रहे हैं।

समुद्र का रंग नीला है।

और एक पीले कलर का बड़ा सा लाइट है।

इस दृश्य में बहुत सारे लकड़ी कटे हुए रखे हैं।